और यहां पे छोटे-छोटे गमले मे यहां पे फूल लगाए गए है देखने मे बहुत ही अच्छे लगते है यहां पे --

यहाँ पे आप देख सकते है उत्सव लिखें हुए है जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुन्दर है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी यहाँ पे घर है बहुत ही अच्छा देखने में लगता है काफी सुन्दर है।

यहाँ पर कुछ मकान बना है और ऊपर बन रहे हैं जो की देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पे लाल लाल ईंटा देख रहे हैं आप ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते--

यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण सिंह यहाँ लिखे हुए है जो की बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छे दिखने में लगते हैं ढेर सारे लोग हैं भीड़ लगाए हुए हैं।

यहां पर एक बस यहां पर एक एम्बुलेंस आयी हुई है देखने में बहुत ही अच्छा लगते है काफी सूंदर है और यहां पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और यहां पर घर है लोगो का बहुत ही --

यहाँ पे आप देख सकते है यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे हाथ में पलेट ले कर खा रहे है देखने में बहुत ही अच्छे लगते काफी सुंदर है।

जो की जूता पहनें हुए है और हाफ पेंट पेहने हुए है और लाल कलर का शर्ट पहने हुए है देखने में बहुत ही अच्छे लगते है और कपार में यहाँ पे रुमाल बांधे हुए है।

देखने में बहोत ही अच्छे लगते है काफी सुंदर है और यहाँ पे ये दुकानदार भाई हाथ में मोबाइल लेकर कुर्सी पर बेठे हुए है और टोपी पहने हुए है देखने में बहोत ही अच्छे लगते है और इस दुकान में बहोत सारा किताब कॉपी --

यहां पे आप देख सकते है ये बैक स्टेज बने है जो की देखने में बहुत ही अच्छे लगते है और यहाँ पे संगीत कलाकार कुछ कर रहे है गा रहे है देखने में बहुत ही अच्छे लगते है।

यहां पे आप देख सकते है एक नदी है जो की देखने में बहुत ही अच्छी लगते हैं और इसमें एक नाव है जो की बहुत ही अच्छे नाव है देखने में काफी सुन --